ये देखिये यहाँ पर हमें गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की। यहाँ पर हमें आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ये देखिए यहाँ पर हमें बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें सीढ़ी दिखाई दे रहे पेड़ दिखाई दे रहा।

ये देखिये यहाँ पर मुझे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर का गेट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे बोर्ड भी दिखाई दे रहा है साइड में दीवार भी दिखाई दे रही है।

हमें पेड़ वगैरह भी दिखायी दे रहा है यहां पर और व्हाइट और ब्लू कलर का आसमान भी दिखायी दे रहा है और हमें यहाँ पर खम्भा भी दिखायी दे रहा है और हरे हरे पेड़ भी दिखायी दे रहे पानी की टंकी भी दिखायी दे रही है। यहां पर टावर भी दिखायी दे रहा है।

हमें आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हरी हरी घास दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे है। यहाँ पे हमें व्हाइट-व्हाइट उजला भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें एरोप्लेन भी दिखाई दे रही है।

देखिये यहां पर हमें बड़े बच्चे बूढ़े सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है और हमें हरे- हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।